यहाँ आस पास सुन्दर सुन्दर पेड़ हैं।

आसमान सफेद रंग का है |

यहाँ पे कुछ आदमी नीचे की ओर देख रहे हैं |

यहाँ पे एक ट्रक है जिसपे एक कार रक्खी हुई है।

यहाँ एक घर पे पानी की टंकी रखी हुई है | यहाँ पे एक टावर भी लगा हुआ है |

यहाँ पे बोहोत सी जैकिट टंगे हुए हैं। यहाँ पे --

यहाँ पे कुछ औरते नदी मे खड़ी है। यहाँ पे हाथ मे --

सामने डी.जे. भी लगा हुआ है।

यहाँ पे एक बुक शॉप है यहाँ पे बोहत सी बुक्स रखी हुई हैं |

यहाँ एक रोड है | यहाँ पे बहुत सी ट्रैफिक चल रही है |

यहां पे अजंता लिखा हुआ है।

पे बहुत सी लाइट्स लगी हुई है ।